हैलो गाइस जैसा की आप देख सकते है पीछे एक लड़का पीछे मोबाइल से फोटो खींच रहे रहे हैं और--

यहाँ का पिलर हैं जो की बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा हैं और एक पेड़ हैं जो की बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा हैं।

वन वन टू गेट वन फ्री सेल हैं जो की सौ परसेंट ऑफ हैं दस परसेंट ऑफ सॉरी लेकिन एक आदमी जा रहा हैं जो की और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

जो की स्कूल के लिए बहुत अच्छा हैं और थोड़ा साइड में गार्डन हैं जिसमें बहुत सारे और छोटे-छोटे पौधा लगे हुए हैं जो की बहुत ही खूबसूरत दिखाई--

नहर जिसमें छोटा-सा पूल हैं सामने एक येलो कलर का घर हैं जिसमे छोटा-छोटा घास हैं बैठने के लिए थोड़ा सा जगह हैं उस साइड में बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ हैं जिसमें बहुत ज्यादा हरे-हरे पत्ते हैं जो की बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा हैं और नहर का पानी तो और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा हैं।

एक त्रिपाल हैं जो की ऊपर से गेट बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा हैं।

कही थोड़ा बैंगनी हैं और भी बहुत पंडाल बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया हैं साइड में पेड़ और भी खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत सारे व्यक्ति

बहुत ही अच्छा के साथ लोग दिया लोग जला रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा हैं।